मेरे अनुसार यह एक कंपनी हो सकती है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई--

और यहां बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं।

बहोत सारे लोग नहा रहे हैं।

ये पार्क बहोत ही बड़ा है इसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ये तस्वीर एक बहोत बड़े ऑफिस की है।

यह तस्वीर बहुत बड़ी मॉल की है। यह काई मंजिल में--

बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

यहां कुछ औरतें भी दिख रही हैं।

ये तस्वीर एक बहोत बड़े मैदान की है।

और यहां बैठक बनाई गई हैं।

यह तस्वीर दो रिक्शा की है यह रिक्शा बहोत ही--

जमा हुए हैं यहां एक स्कूटर भी खड़ा हुआ है।

वो यहां फोटो खिंचवा रहे हैं।

यह तस्वीर एक बड़े मैदान की है।

ये तस्वीर एक कारखाने--